और इस साइड में एक और एयर का साबुन भी रखा हुआ है। तेल भी रखा हुआ है। होर्लिक्स बोर्लिक्स बहुत कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर कुरकुरे फुर्कुरे अंडे वनडे बहोत कुछ रखा गया है यहाँ पर।

ये तस्वीर देख के लग रहा है की ये किसी कमरे में रखा गया महराज शिव जी बुद्ध का तस्वीर लग रहा है। मुझे यहाँ पे और यहाँ पर जो की दो तीन सिंगर भी है। बैठे हुए जो बूढ़े आदमी बैठे हुए है जो शायद कुछ संगीत का कला प्रदर्शन कर रहे है। लेकिन इस साइड में चेयर भी लगाई गई है। चेयरो में फ़िलहाल कोई नहीं बैठा है सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है।

बोर्ड लगाए हुए हैं जिस पे साफ-साफ लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक यहां पे लिखा गया है और आप देख सकते हैं ए.टी.एम. में फिलहाल एक भी आदमी नहीं घुसा है और आप देख सकते हैं ए.टी.एम. में शायद एक कार्ड होते हैं पिक्चर नहीं है कहां।

और मैन गेट मे स्कूटी लगाई गई हैं आप देख सकते हैं डेकोरेशन कितना ही मस्त किया गया है हीरो शोरूम में देख सकते हैं हीरो शोरूम सबसे अच्छा शोरूम लग रहा है मुझे यहां।

तस्वीर देख के मुझे लग रहा है की यहाँ पे जो जो बॉर्डर में शहीद हो गए है उन सब --